वरना मौसम भी अच्छा है और काफी सारे यहां पे अच्छे अच्छे पेड़ हरे भरे पेड़ भी यहां पे--

यहां पे एक होटल तस्वीर है जो कि का होम अवे फ्रॉम होम लिखा है।